यह हमारे गावं का स्टेशन है जिसके आगे एक फ्लैग लगाया गया हैं जो देखने मे काफी अच्छा लग रहा हैं और हवा चल ने के बाद ये फ्लॅग और भी लहराते हुए काफी सुंदर लग रहा हैं।

एक पार्क है जो काफी सुंदर और यहाँ पे काफी सारे झूले लगाये गए है। इन इसकी टिकट काफी कम है और इसके पीछे मे काफी बड़ा तालाब है जो देखने मे काफी अच्छा लगता है और ये--

ये हमारे स्कूल के बच्चों ने हैन्ड्ग्राफ बनाया है जिसमे काफी अच्छी - अच्छी डिजाइन बनाई गई है और ये सारी चीजे काग़ज़ से बनाई गई है जो देखने मे काफी खूबसूरत लग रहा है।

के आगे जाके घर जो अभी - अभी बना है जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है और ये एक दो दिन मे पूरी कम्प्लीट हो जाएगी जो देखने मे काफी सुंदर लग रही है।

ये एक फूल बाजार है जहां पे काफी सारी फूल मिलती है और यहाँ पे सजावट के लिए और शादी वगैरे के लिए फूल ले जाया जाता है। यहाँ पे हर कलर के फूल और हर किसम के फूल मिलते है जो काफी सुंदर और ताजे रहते हैं।

ये एक मॉल है जहां पे सिर्फ फले मिलती है और यहाँ पे काफी अच्छे - अच्छे फल मिलती है बट ये काफी महंगी भी मिलती है क्युकि ये मॉल में बिकती है।

ये एक ग्रेनाइड का फैक्ट्री है जहां पे बड़ी बड़ी- बड़ी ग्रेनाइडे बनती हैं और यहाँ से होलसेल होती है और यहाँ से दुकान मे जाके बिकती है जो यहाँ पे बहुत सारी मजदूर भी हैं जो ग्रेनाइड बनाने का काम करते है।

ये एक बुक्स्टोर है जिसका नाम टीजा बुक्स्टोर है जहां पे काफी अच्छी - अच्छी कहानी वाले बुक मिलते है और बच्चों के लिए तो पोएम वाली बुक और भी अच्छी रहती है जहां पर रोज कम से कम दस लोग आ जाते हैं बुक लेने के लिए।